अंदर छोटी सी लड़की का कपड़ा टंगा हुआ है पर्स टंगा हुआ है रंग बिरंगा कपड़ा --

और ऊपर ड्रॉअर है जिसमे अ कुछ-कुछ सामान रखे हुए है।

और एक ये मंदिर जैसा है।

सबसे ऊपर लिखा है महादेव कॉम्प्लेक्स सबसे नीचे लिखा है आदित्य विजन ।